यहां मूर्ति बहोत ही खूबसुरती और अच्छी मजबूती से बनाई गई हैं।

यहां एक मंदिर हैं मंदिर का गेट बहुत ही खूबसूरत बना हुआ हैं मंदिर का गेट काले रंग से रंगा हुआ हैं।

इस पार्क में अलग अलग तरीके के अलग अलग किस्म के झूले लगे हुए है यह झुले बहुत ही अच्छे और खुबसूरत लग रहे है।

यहाँ किसी जाल के अन्दर बंध है यहाँ हमें तीन लंगूर नजर अ आ रहे है।

लाइटे लगी हुई है कुछ लाइटे सफ़ेद रंग की कुछ लाइटे बेगनि रंग की लगी हुई है यह पार्क देखने में बहुत ही सुंदर है।

यहां एक बहोत ही बड़ी लम्बी चोड़ी और खुबसूरत--